बल पर परोसा गया भोजन सामग्री जिसपर डिजाइन भी बनाई हुई है।

एक कार वॉशिंग स्टेशन है जिस पर एक कार खड़ी है और वॉशिंग के लिए मशीन और ये पाइप नज़र आ रहे है।

और इससे दृश्य भी बड़ा सुंदर दिखता है परंतु यदि कोई फस जाए तो उसकी मृत्यु भी आवश्यशम्भावी है।

मियू म्यूजियम में एक बहुत पुरानी मि अ अ मूर्ति रखी गई है जो कहीं से खोदकर मिली होगी जिसको इस म्यूजियम में सजाया गया है।

ये ब्यूटी पार्लर जिसमें आगे दृश्य बनाया गया है।

कक्षा का दृश्य है जहां विद्यार्थी बैठे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

एक घर या दुकान को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है जो कि दिखाई दे रहा है।

एक वाटर पार्क जिसमें स्लाइड है जिस पर लोग ऊपर से फिसल कर आते हैं और नीचे पानी में गिरते हैं नीचे पानी भी है।

और लोग खाने के पहले ये स्टापट लेते हैं इस के बाद खाना शुरू किया जाता --

एगो वाचनालय जहाँ पर की लोग बैठ कर पढ़ रहे हैं बहुत सी पुस्तकें रखी गयी हैं।